फोटो में आप देख सकते है की यह एक फलों की दुकान की फोटो है जिसमे बहुत सारे अनेक प्रकार के फल रखे है।

फोटो में एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें एक कोचिंग क्लास का बोर्ड लगा है यह जितु सर की कोचिंग क्लास है केमेस्ट्री की क्लास है।

तुम्हें हमें एक टीचर नजर आ रहे है जो बच्चों की क्लास ले रहे है यहाँ बहुत सारी प्रॉबलम सॉल्व कर रहे जिससे बच्चे लोग अपनी --

ये एक बस नज़र आ रही है जिसमे जय झूलेलाल लिका लिखा है और शुभ लाभ भी लिखा है और इसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ ऊपर से रेड कलर की है और वाइट कलर की भी है।

फोटो में एक मंदिर नज़र आ रहा है जिसकी तीन दो गुम्बद है यहाँ सब सफ़ेद कलर की गुम्बद है और वहाँ पे एक बोर्ड भी रखा है जिसमें श्री शक्ति धाम लिखा है।

नीचे एक रेड कलर का बैनर है जिसमे स्कूली मोजा लिखा हुआ और नीचे दो स्टूल भी रखे हुए है और यहाँ पे एक सीडी भी---

नहीं है जो अच्छे से रखी हुइ है और उस अंकल के हाथ में एक बुक है जिस में एव्री मेंस वॉर लिखा हुआ है यह अंकल ने एक घड़ी भी पहनी हा हाथ में--

एक रिक्शा वाले भैया दो तीन लोगों को बिठाल कर ले जा रहें हैं और बहोत सी गड़िया भी यहाँ पर खड़ी है।

इस फोटो मे एक भ-भैया नजर आ रहे है जो वर्काउट कर रहे है और पीछे बोर्ड मे वर्क लिखा हुआ है और ---

--और वह मछली भी पकड़ रहे है और एक अंकल भी है वहाँ--